आस-पास बोर्ड लगे हुए है गेट लगा हुआ--

यहाँ पे एक बड़ा- सा पार्क है पार्क में चार खम्भे गड़े हुए है चार खम्भों के ऊपर एक छत बनी हुई है।

ग्राउंड के चारो तरफ बाउंड्री है जीने लगे हुए है कुछ बिल्डिंगे बनी हुई है आस-पास बड़े-बड़े पेड़ है।

टी बनी हुई है एक बड़ा सा गोल पाइप लगा हुआ है एक बिल्डिंग बनी हुई है उसपे एक बड़ा सा--

प्लेट में सिर्फ चम्मच है खाली ये एक टिश्यू पेपर --

दो लड़के सफ़ेद टोपी लगाए हुए है एक लड़के के हाथ में किताब है एक लड़का कैमरा पकडे हुए है आस-पास--

यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए है यहाँ पे बहोत सारी मशीने रखी हुई है स्टूल रखे हुए है डम्बल रखे हुए है एक लड़का--

कैलेंडर लगा हुआ है दीवाल पे एक फोटो लगा हुआ है आगे दीवाल पे कबर्ड बने हुए है उनमे बहोत सारा--